सामने एक व्यक्ति जमीन पे लेटा हुआ है दूसरा नीली टी शर्ट वाला व्यक्ति उसका पैर का स्ट्रेचिंग करवा रहा है ग्राउंड है एक बड़ा सा पीछे कुछ लोग चेयर पे बैठे हुए है।

हॉस्पिटल दिख रहा है जिसपे सफ़ेद चदर के बेड डले हुए है परदे डले हुए है नीले और सफ़ेद ऊपर सेल्लिंग में अ परदे खिसकाने के लिए --

कुछ लोग सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं।

सामने एक बड़ा सा किले के जैसे घर बना हुआ है जो बहुत बड़ा है पिले कलर का घर घर है उसमे लोहे की बड़े बड़े खिड़की --

और प्लेट को उल्टा कर के रखा हुआ है पीछे सफ़ेद और भूरे कलर के पर्दे है ऊपर लाइटें लगी हुई हैं।